बार्बर शॉप यह एक यह एक बार्बर शॉप की दूकान है बंदा बैठा हुआ है बंदा फोटो ले रहा है उसके कंधे पे तोलिया लगाया हुआ है।

सामने दीवार और टेबल वगेरा पे भगवा रंग हुआ हुआ है ऊपर हरा रंग हुआ हुआ है जिसमे एक आदमी प्रतिमा को छु रहा है और ये चेक कलर की शर्ट पहनी हुई है।

फ्रिज रखा हुआ है एक इसमें आदमी खड़ा है ऊपर पंखा है बहुत सारी लाइट चस गयी है यहाँ अनेक प्रकार की मिठाई --

और टीका लगा हुआ है और ईयर ईयर ईयर बड्स बगेरा लगाये हुवे है पीछे औरत बगेरा खड़ी है और पहाड़ो कि फोटो है पीछे माला लगे हुए है।